और यहाँ पे कुछ एक नजारा दिख रहा है जहाँ पे कुछ मार्केट का नजारा दिख रहा है जहाँ पे --

औ राइट साइड में एक दुकान है जिसका शटर बंद है उसके सामने दो स्कूटी खड़ी दिख रही है।

और यहां पे एक नजारा दिख रहा है जहां पे कुछ स्कूल या हॉस्पिटल ऐसा नजारा दिख रहा है जहा--

जिसमें बहुत सारे लाइटें लगी हुई है लाइनों के अन्दर और अंधेरा छाया हुआ है।

दुकान बहुत बड़ा दिख रहा है दीवार जैसे दिख रही है का नजारा ऐसा कुछ दिख रहा है।

और यहां पर एक ऐसा नजारा दिख रहा है जहां पर रेस्टोरेंट दिख रहा है जहां पे खाली सीटे दिख रही है और उनके ऊपर अं ब्लैक कलर की--

और एक आदमी मशीने खरीद रहा है दो तीन लोग खड़े हुए दिख रहे हैं जिनके जेंस दिख रही है।

एक चित्र बनाया हुआ है यहां पे हल दिख रहा है खेत दिख रहा है।

व सामने छोटे मोटे पेड़ पौधे दिख रहे है और एक छोटा सा बच्चा बालों पे लगाया हुआ दिख रहा है।

और यहां पर कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है इसके अंदर--

और यहां पे एक ऐसा नजारा दिख रहा है जहां पे अमूल नाम का एक पोस्टर बना हुआ हैं ऊपर दो तीन पोस्टर --

ये कुछ दूध की दुकान का पोस्टर दिख रहा है ये।

और यहां पे ऐसा एक नजारा दिख रहा है जहां पे एक सड़क दो भागों में बंटती हुईं दिख रही है और एक आदमी जा रहा है सड़क के किनारे से।

व्हाइट कलर का मन्दिर दिख रहा है और ऊपर कुछ वायर वायर दिख रहे हैं और--

और परस पे कुछ टाईल दिख रही है कुछ डिजाइन बनी हुई बॉक्सो कि वो दिख रही हैं।